यहां पे बहोत सारी जगह मोमबत्तियां जली हुई हमें दिख रही हैं।

पीछे एक रोड भी हमें दिख रहा है।

यहां पे बहोत सारे मकाने हमे दिख रही हैं।

आकाश भी बहुत नीला है।

बीच में एक मेज भी रखा हुआ है।

यह कोई मॉल का उ पिक्चर हमें लग रहा है।

इस दीवाल के पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां हमें एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

इस चित्र मे हमे एक फर्नीचर का शॉप दिखाया जा रहा --

यहां बीच में हमें एक पूल दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

बगल में एक मैदान भी दिख रहा है।

यहां कोई लाइब्रेरी का चित्र हमें दिख रहा है।

पीछे पेड़ भी बड़ा लगा हुआ दिख रहा है।